एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में नीले कलर की खिड़कियां दिखाई दे रही है सामने दो पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे है उनके साइड में व्हाइट कलर का कचरा सा दिखाई दे रहा है सामने बहुत सारे आदमी घूमते हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे एक सब्ज़ी मार्केट दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे सब्जियां दिखाई दे रहे हैं एक बोरे में मिर्चियां भरी हुई दिखाई दे रहे हैं कुछ दूरी पर गोभी रखी हुई दिखाई दे रही हैं आलू दिखाई दे रहे हैं।